या यह इमेज़ एक रेस्टोरेंट की है जहां पर--

यह इमेज एक गैरेज की नजर आ रही है जिसमें कि कुछ कारें हैं।

वो बोनट्स हैं वो ओपन है लगता है जैसे रिपेयरिंग के लिए खड़ी हों।

और उसमें से एक कार जो है वो एक रनवे पे खड़ी है और ये सारी कारों को रिपेयर किए जाने का काम यहां पर हो रहा है।

पानी में और वो जो बच्चा है उस पानी को काफी इंजॉय कर रहा हैं।

इस पिक्चर में एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्फ्रेंस रूम नजर आ रहा है जिस टेबल पर।

एक बहुत ही सुंदर सा जिम नज़र आ रहा है जिसमें की एक व्यक्ति जो है--

अपना एक्सरसाइज कर रहा है। यह जो मशीन है यहां पर हमें इस जिम में कंपलीटली नजर आ रही है।

यह किसी फॉरेन कंट्री की पिक्चर नजर आ रही है जिसमें की एक शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

नाश्ता वगैरह कर सकते हैं ऐसी टेबल्स लगी है घूम सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं यह ऐसी जगह है।

इस इमेज में हमें जो नजर आ रहा है वो है की मौसम जो है वो शाम के चार पांच बजे का मौसम नजर आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड --

है वो अ एरोप्लेन में बैठते इस पिक्चर में नजर आ र--

प्रस्तुति देती हुई नज़र आ रही है और यहां पर बहोत सारे जो लोग है वो उस प्रस्तुति को निहारते हुए नज़र--

बहोत से लोग बैठे हुए और कुछ लोग उधर खड़े हुए--

जहां पे गेरेज की तरह काम होता है गाड़ियां सुधरने के लिए सुधारने के लिए लाई जाती--

और रिसेप्शन की तरफ एक बहोतसा ही सुंदर का बोर्ड नजर आ रहा हैं।

इस पिक्चर में एक राधा कृष्ण की मूर्ति बत बताई गई है।

अह पैरों मे एक सुंदर सा मोर है मूर्ति बहोत ही बहोत ही बहोत ही ज़्यादा सुंदर है।

बहोत ही सुंदर सी इमेज नज़र आ रही है जिसमें की--

हार फूल इन मूर्तियों पर सुंदर सुंदर डाले हैं सुंदर सुंदर ड्रेसिंग है बहुत सुंदर मूर्तियां हैं।

उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और वह व्यक्ति अपनी सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है।

सुंदर सुंदर सी पैंटिंग्स लगी हुई है डेकोरेशन लाइट्स लगी हुई है।

इस इमेज मे कोई पिकनिक स्पॉट्स की जगह है जो नज़र आ रही है और एक किला टाइप बना हुआ है यहां पे और उस किले के पास मे--

एक बहोत बड़ा सा पेड़ है और इस प्लेग्राउंड में अ कुछ लोग कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहें--